घास है पाइप है सीढ़ी है पत्थर है।

दुकाने है हॉस्पिटल है कुलार है बेनर है मेट है ए_सी है।

बाइक है रोड है लोग है गेट है बिल्डिंग है घास है दोपहर है आसमान है दिन है।

एंब्लेम हैं ऑफिस हैं चैयर हैं टेबल हैं कलेंडर हैं पंखा हैं घड़ी हैं लाइट हैं।